कपड़े डले हुए है ग्राउंड मे कार्टून पड़ा हुआ है पड़ी है तार लगे हुए है बिजली के खंबे लगे हुए--

एक पी_यू_सी सेंटर का रूम दिख रहा है। बेड़ीगेट रखे हुए है ग्राउंड मे बिल्डिंग गे दिख रहे है। पीछे की तरफ पेड़ लगे हुए है।

एक बैनर लगा हुआ है कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है और सामने एक डस्ट्बिन रखा हुआ है।